क्रिकेट को कोई टूर्नामेंट होतो दिख रहियो है क्योकि एक साईड में टेंट भी लाग राख्यो नजर आ रहियो है और अभी तो दूर तान ठेठ तानी कोई नजर नही आ रहियो खिलाडी।

इस फोटो में नजर आ रहियो है की दूर से ली गई की तस्वीर है जहा एक लेवल में दुबड़ी ही दुबड़ी दिख रही है ऐसा कह सकते है की एक बहुत बड़ा ग्राऊंड जैसा नजर आ रहा है।

और चार पांच व्यक्ति यहा पर क्रिकेट खलते भी दिखाय दे रहे हैऔर के साइड में नेट भी दिखाय ददे रही है बहुत बड़ी नेट --